यह एक टेरेस्टेड गार्डन की पिक्चर हैं गार्डन तो दिख नहीं रहा हैं पिक्चर में बस खाली पिक्चर की बोर्ड दिख रहीं हैं।

सौरी शाम के टाइम की जो पिक्चर है ये और देखने में काफी पिक्चर में क्लियेर --

गेट की ये फोटो जो सामने से ली गई है गेट तो बंद पड़ा है।

सामने एक उश अ सामने मेन रोड भी गया हुआ है जहाँ पे ऑटो वगैरह बाइक वगैरह और काफ़ी ज्यादा लोग खड़े हुए है।

लोग यहां पर सैर करने आ रहे है और जा रहे हैं।

ये एक सेमिनार की वीडियो लग रही है जो काफी खुला लग रहा है।

ये एक डांसिंग नृत्य की वीडियो है जहां पर तीन से चार लोग--

और अंधेरे की वजह से पिक्चर काफी साफ नहीं दिख रहा--

यह एक क्लास रूम की पिक्चर है जहां पर काफी सारे बच्चे अपनी क्लास में बैठे हुए है।